ये जेब्रा है तीन जेब्रा है एक जेब्रा घास खा रहा है उस साइड और ये दो जेब्रा एक साथ खड़े हुए हैं।

आनंद वस्त्रालय है मोतिहारी के नाम से और उसमें ना कपड़े हैं।

सारे सब्जी वाले बैठे है किसी के पास बैंगन है किसी के पास हरी मिर्च है कही कही बाइक खड़ी हुई है कुछ साइकिल बड़ी खड़ी हुई है।

घूमने का स्पॉट है जहाँ दो लड़के एक लेडिज हैं दो आदमी हैं एक लेडिज हैं और-र इसके ऊपर मँ-मम रोड पे टाइल्स लगे हैं इधर पानी है पानी के अंदर एक बोट है।